ये किसी और के बेडरूम शोकेस है।

ये कुछ पथरीले पत्थर दिख रहे है। बहुत छोटे-छोटे घास दिख रहे है और बीच में छोटा सा पानी रुका हुआ है जो शायद नदी का या बारिश का होगा।

दो पटरी दिखाई दे रही है। एक छोटा सा झोपडी दिखाई दे रहा है। बैठने के लिए विश्रामगृह दिख रहा है जिसमे बेंच लगे है और दो बाइक खड़े है।

बड़े-बड़े घास है और लोग घूम फिर रहे है एक दिख रहे है जो घूम रहे जो अच्छा है।

प्ले ग्राउन्ड है। जिसमे किनारे में सीढ़ियां लगी हुई है। सीढ़ी में तीन लोग बैठे हुए और खड़े हैं ।